इस दृश्य में एक मैरेज हॉल के अंदर इंटर करने का रास्ता दिखाई दे रहा है।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

और इस जिम के अंदर दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसी के बाहर एक मिठाई की भी ठेला लगा हुआ है उसपे न्यू मिठाई लाल शॉप लिखी हुई--

जिसके बाहर एक व्यक्ति खड़े होकर बैनर फिक्स करते हुए दिखाई दे रहा है।

बहुत ही सारी लाइट लगी हुई नजर आ रही है।

इस चित्र में एक दवाई खाना नजर आ रही है जहां पे एक पलंग पे बहोत सारी दवाइयां सरिया करके रखी हुई है जो की होम्योपैथ की है।

एक प्लास्टिक की चेयर भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

और उसी बैनर के नीचे एक रूम दिखाई दे रही है।

साइड में डंबल्स भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।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

सीढ़ी भी नजर आ रही है और कुछ दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारी मात्रा मे भालू भी नजर आ रही है।

और स्टेज बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाई हुई है।

जैसे कि बहुत सारे पेंट्स और फेविकोल के डब्बे भी दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग चलते आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी टेबल और चेयर रखी हुई दिखाई दे रही--

इस दृश्य में एक क्लास रूम दिखाई दे रही है।

और एक खिड़की भी नजर आ रही है।

हनुमान के हाथ में एक पत्थर भी है और एक गदा भी है।

रेलिंग स्टील की दिखाई दे रही है।

दूसरी ओर टेबल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।

बहुत सारे व्यक्ति और महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक क्रिश्चियन का साइन बनाकर उसमें जीसस भी लगे हुए हैं।

और यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी भी नजर आ रही है।